यहां एक मंदिर है उसे मंदिर में एक माताजी की मूर्ति है और उनके साथ में शंकर भगवान की मूर्ति भी है उसे मंदिर में माताजी के आगे--

यहां एक मेला लगा हुआ है उस मेले के सामने बहुत सारे लोग है उस मेले में बहुत सारी लाइट् का डेकोरेशन किया गया है।

यह एक मंदिर है उस मंदिर में बहोत सारे लोग खड़े हुए है और लम्बी लाइन लगाई हुई है उस मंदिर के सामने बहोत सारे घने पेड़ पौधे है।

यह एक व्यक्ति है जो झाड़ू लगा रहा है और बाहर उसके सामने बहुत कचरा पड़ा हुआ है अंदर एक रूम में जहां से कुछ बोरियां दिख रही है बाहर इसकी चप्पल रखी हुई है।